साइड में दो कपल्स की फोटो लगी हुई है एक लड़का है एक लड़की हैं।

एक लेडी डॉक्टर है लेडी डॉक्टर ने मास्क लगाया हुआ है जेंट्स डॉक्टर ने चश्मा लगाया हुआ है।

एक आदमी खड़ा है एक धोती और टी -शर्ट पहन के उसमे पिले कलर की टी शर्ट पेहनी हुई है।

एक क्लासरूम है जहां पे बच्चे पढ़ रहे है सामने एक सिर है जो पढ़ा रहे है सब ने रेड टी शर्ट पहनी हुई है वाइट पेंट पहना हुआ है।

मैको में रंग बिरंगी से पोता हुआ है।

एक लड़का खड़ा है एक लड़का वाइट टी- शर्ट पहनी है बगल में बेड है जिसमें वाइट बेडशीट है।

पुराने से घर बने हुए है एक घर के ऊपर काले शब्दों मे लिखा हुआ है।

फिर ब्लैक कलर की केबल गई है नीले कलर का टिन का शेड लगा हैं।